और यहाँ पर हमें रोड दिखाई दे रही है यहाँ पर फत्तर भी दिखाई दे रहे हैं पत्तियों का कलर येल्लो कलर की पत्ती है यहाँ कुछ हरी कलर की भी पत्ती है।

की जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर की है यहाँ पे हमें पेड़ भी दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।

दिवालो का कलर जो है वाइट कलर की है यहाँ पर बहोत सारी लाइटिंग भी लगी हुई है।

टेबल दिखाई दे रही है साथ मे हमे बैग्स दिखाई दे रहे है पर्पल और व्हाइट कलर का बैग्स दिखाई दे रहे है यहां पर हमे ब्रिज दिखाई दे रहा है यहां पर हमे बादल हमे दिखाई दे रहे है।

डस्टबिने दिख रहे हैं यहाँ पर कुर्सियां हमें दिख रही है यहाँ पर हमें बहोत सारे पैकेट हमें दिख रहे है यहाँ पर बहोत सारे फैंस हमें दिख रहे है बादल दिख रहे है।

एक हमें उम् बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें बहुत सारे परदे दिखाई दे रहें हैं परदों का कलर कुछ पीला है कुछ लाल है।